माटेलिकल लिखा हुआ है ये अ भीभो भी लिखा हुआ है।

ऐ कुछ पोस्टर्स भी दिख रहे हैं।

एक आदमी एक ठेला पे कुछ बिक रहा है।